तलने पर सीमेंट बालू गिट्टी तीनों को मिक्स करने पर पिलर ढाला जायेगा तब जाकर पिलर बनेगा चारो तरफ जहाॅं-जहाॅं पिलर बने हुए हैं वहाॅं यह प्रतिक्रिया करने के बाद ही पिलर बनता है।

एक व्यक्ति है जो फोटो खींचाने के प्रयास कर रहा है उसके पीछे कैमरे अभी हाथ में घड़ी है ये बात करने की --

चाह रहें हैं सब अलग-अलग तरह की लोग ई छोटे पैंट पहने हुए है एक टी-शर्ट पहना हुआ है बच्चा जो है बहुत ही खूबसूरत है जो पापा के साथ खेलने की --

इस पे डालके आप खा सकते हो बहुत अच्छा लगता है खाने में इनकी प्लेट के नीचे जो टेबल रखा गया है वो भी बहुत खूबसूरत है देखने में बहुत अच्छा लगता है ।